इस पिक्चर में हमें यहां पर रेड कलर का--

पीछे में दिख रहा है जो की वाइट कलर का है जो की --

सामने ही हमें ब्राउन कलर का यहां पर--

यहां मेडिसिन शॉप लग रही है छोटा सा बॉक्स हमें यहां पर ग्रीन कलर का भी दिखाई दे रहा है।

एक छोटा सा बच्चा है पीछे यहां पर हमें--

जंगल भी बड़ा सा दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का कारपेट है माइक है ब्लैक तारे हैं ब्लैक मार --

इस पिक्चर में हमें यहां पर बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

रेड येलो ग्रीन के कुछ कपड़े रखे हुए भी हमें--

बहुत सारी गाड़ी भी यहां पर दिखाई दे रही है।

पीछे मैं बहोत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हुए हुए हमें दिखाई दे रहे है।

मेरे सामने की तरफ ए_सी लगा हुआ दिख रहा है और कुछ ब्लैक और वाइट कलर के टेबल्स दिख रहे।